इस चित्र में एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है जिसके बाहर गेट है।

सामने गेट पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे कुछ लिखा हुआ है।

उसपे एक सफेद रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है।

दुकान के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं।

दुकान की दीवार सफ़ेद रंग की है।

एक पुल है जिसकी दीवार पे पीले तथा आसमानी कलर से पेंट किया गया है।

दुकान के सामने कुछ गाय खड़ी हुई है।

दुकान को भी सफेद कलर से पेंट किया गया है।

यह किसी फर्नीचर की दुकान का चित्र है सामने में ब्लैक कलर के कुछ सोफा सेट रखे हुए हैं पीछे भी भूरे कलर के सोफा सेट रखे हुए हैं।

दुकान को सफेद कलर से पेंट किया गया है और इसके पिलर भूरे कलर के हैं।

यह चित्र किसी हॉस्पिटल का है सामने एक काले कलर का बेड रखा हुआ है।